एक साइड अम साफ़ दिख रहा है एक साइड थोड़ा--

कुछ लोग बाहर में खड़े हैं रोड साइड पर कुछ लोग आ रहे हैं--

फिर यहाँ छोटा-सा होटल हैं।

यहाँ पर किसी चीज़ का--

तम्बू लगाए हुए सब है कुछ लोग बैठे है कुछ लोग आना-जाना कर रहे है पेड़ है सामने--

बैठने के लिए जो बड़ा छत्री-सा रहता हैं वो लगा हुआ हैं नीचे बैठने के लिए चेयर लगा हुआ हैं ।

झुक के कुछ कर रहा हैं--

तम्बू लगा के कुछ बिक्री कर रहे है गाड़ी है बाइक --

प्लेट के उपर्र ऊपर कुछ स्वीट्स रखी हैं।

गेट बंद एक बोर्ड लगा हुआ हैं बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ हैं।

यहाँ पर एक छोटा-सा तालाब नज़र आ रहा हैं तालाब के अम्म किनारे-किनारे--

और भी बहोत सारे बड़े-बड़े चट्टान हैं और पेड़-पौधे भी झूले हुए हैं ।